एस.बी.आई. बैंक का ऐ.टी.एम. दिखाई गया है जिसमे इ स्टेट बैंक --

जो की एक दुकान के सामने खड़ी है यह दुकान --